बहुत सारे मछली के टुकड़े पड़े हुए हैं। कुछ बर्तन रखे हुए हैं। प्लेट रखी हुई हैं।

यहाँ पे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई हैं उसपे रंग बिरंगी लाइटें लगी हुईं है।

आस-पास मकान हैं। गाड़ियाँ रखी हुई हैं। बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं। बड़े-बड़े --

आस पास उम्म पानी है। कुछ बोरियाँ रखी हुई हैं एक तिरपाल रखी हुई है। एक स्टूल रखा हुआ है।

यहाँ पे एक गार्डन है। गार्डन के आस-पास बड़े-बड़े पेड़ हैं। गार्डन में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

काउन्टरों पे भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

उपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। आगे कुछ साइकिलें खड़ी हुई हैं। एक आदमी नीचे बैठा हुआ है।

ऊपर लाइट लगी हुई है। कुछ लोग खड़े हुए हैं। टेबल के ऊपर बड़ी-बड़ी बोटले रखी हुई हैं। कांच के गिलास रखे हुए हैं।